गाड़ी ह बलेरो ह टेम्पू ह उधर पोस्टर ह उधर लाइट लगल ह तार लगल ह।

आसमान हो पानी हो लाइट लगल हो लगल हो इधर आदमी सब खेल रहेलु टेम्पु लगल हो लगल हो।